यह देखने में बहुत ही सुंदर है। क्योंकि इसका कलर व्हाइट में है।

और इसमें बहुत सारे कमरे भी हैं।

और यहां पर बोहोत भीड़ होती है क्यूंकी यहाँ पर आदमी योगा करने के लिए आते हैं तथा योगा सीखने के लिए भी आते हैं।